पैकेट टंगे हुए है इसमें मैग्गी मसाला मिट मसाला मैंगो मसाला--

यहाँ पे एक रस्सी भी टंगी है जिसका रंग हरा और सफेद है पीछे और रस्सियों में बोहोत सारा सामान टंगा हुआ है दिवार का रंग सफ़ेद हैं।

गाड़ियों के तेल है तथा कुछ फेबिकोल का डब्बे भी रखे हुए है जमीन का रंग काला है छत का रंग सफ़ेद है तथा इस पर लाइट लगी हुई है किनारो की पट्टीयो में हरा रंग है।

यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है काले रंग के कपडे पहने हुए है उनके हाथो में सफ़ेद रंग के ग्लव्स है।

यहाँ पेड़ लगे हुए है पेड़ का रंग हरा है पीछे दिवार दिखाई दे रही जो सफ़ेद रंग की तथा बांस की पचि से बना हुआ --

फल भी रखे हुए है यहाँ पर महिलाएँ किसी चीज की पूजा कर रही है ये छठ पूजा का दृश्य दिखाई देता है।

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर बहोत सुन्दर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर झूले लगे हुए है झूलो का रंग --

अभी दिखाई देता है कुछ चकला --

जैसे की मैं यहाँ पे देख पा रही मुझे यहाँ पर दो एक आदमी और एक औरत की तस्वीर दिखाई दे रही है।

और नीले रंग के कपड़े पहने हुए है और एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है छत का रंग सफ़ेद है तथा आसपास कुछ फूल भी बने हुए है।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने नीले रंग के कपड़े पहने है उसके आँखों पे चश्मा है चश्मे का रंग सफेद है।

सफेद है तथा यहाँ पर रात का समय है इसलिए यहाँ पर बादल का रंग काला है यहाँ पर कुछ लाइट दिखाई दे रही है लाइट का रंग पिला है तथा कुछ बोर्ड भी लगे हुए है बोर्ड का रंग पीला और सफ़ेद रंग के हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक बहोत सुंदर पैलेस दिखाई दे रहा है जिसका ना--

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक झरना बेहता हुआ दिखाई दे रहा है जिस में से सफ़ेद रंग का पानी बेह रहा है सब साफ और सुंदर है कुछ चट्टान दिखाई दे रहे है चट्टानों का रंग भूरा है।

यह पानी तेज गति से और तेज धारा में बह रहा है।

और यहाँ पर कुछ सफ़ेद रंग भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुवे दिखाई दे रहै है जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं।

बोरियां दिखाई दे रही है बोरियो का रंग सफ़ेद आसपास --

और तरबूज रखा हुआ है एक अनानस भी रखा हुआ है ये अलमारियों में रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक छोटी डलियां दिखाई दे रही है जो गुलाबी रंग की है।